दो आदमी भी खड़े हुए हैं वो अपना काम कर रहे हैं उन्होंने पीले रंग के कपड़े पहने हैं।

काफी अच्छा सा यहां तक दूर तक दिखाई दे रहा है।

दो वाले दो खरीदने वाले हैं उनके हाथ में दूध का डब्बा दिख रहा हैं पीछे की दीवाल पीली कलर की हैं।

झांकी के सामने लोग झांकी को देखने के लिए आए हैं एक मंदिर जैसा ऑरेंज कलर की झांकी बनी हुई है।

सामने एक हरे कलर की साड़ी पहने औरत खड़ी है उसके साथ में एक छोटी बच्ची है जो नीले रंग की फ्रॉक पहनी है।

उसके अगल बगल बलून से फुल डेकोरेशन किया हुवा हैं सफेद और नीले रंग के बलून से काफी अच्छा डेकोरेशन किया हुवा हैं।

यहां जैसे कि मैं देख पा रही हूं एक साड़ी की दुकान है लोग साड़ी खरीद रहे हैं और दो आदमी--

मंदिर के सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं।

कुछ सामान रखा हुआ है और हार फूल टंगे हुए हैं।